यह एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है द लेज़ी रेस्टोरेंट इसके ऊपर बहुत सारी लाइटिंग हुई है जो की ब्लू एंड पिंक से हुई है और इसके गेट पे ठीक बराबर में के भी लिखा हुआ है बहुत बड़ा।

यह एक सैलून है जिसका नाम है लैकमी सैलून यह बहुत बड़ा सैलून है इधर कुछ एक आदमी भी खड़ा है और यहाँ पे --

यह एक हॉस्पिटल है जिसका नाम आई.सी.यू फार्मेसी है और यहाँ पर तीन गाड़ियाँ भी खड़ी हैं एक एम्बुलेंस और एक रेड कलर की गाड़ी और एक ब्लैक कलर की गाड़ी भी है और यहाँ पे लाइटिंग भी हुई वी है और यहाँ पे एक --

अंदर की तरफ बोहोत सारी बाइकें और गाड गार्ड भी है।